जो बैठी हुई है डांस करने के लिए रेडी हो मतलब बैठी हुई है बेंच के ऊपर।

यहां पे काफी कुर्सियां ट्रक में लदी हुई है और बंधी हुई है चारों साइड से बांधा गया है इन कुर्सियों को।

और पेड़-पौधे भी हैं पेड़ों में बांधा हुआ है।

बीम का और छत का लोहा यहां पे बिछाया गया है और लाइटिंग लाइट फिटिंग भी की गई है।

और काफी लोहा है लोहा दिखाई दे रहा है पिलर का लोहा है।

एक दो लोग यहां पे दिख रहे हैं जो इसका काम कर रहे हैं।

और भी काफी सामान यहां पे टंगा हुआ है यहां पे काफी लोगों की भीड़ भी है काफी लोग ले रहे हैं घूम रहे हैं देख रहे हैं।

बड़ी फोर व्हीलर यहां से जा रही है उसके ऊपर काफी सारा सामान रखा हुआ है एक मेंबर वहां पर बैठा हुआ है।

और ये रास्ते के दूसरी साइड बहुत बड़ा पहाड़ है पहाड़ लग रहा है पहाड़ के अंदर से रास्ता निकाला गया है।

यहां पे शॉप है किराने की शॉप है जिसमें काफी डिब्बों में चॉकलेट वगैरह रखी हुई है ऊपर--

यहां पे काफी कुरकुरे टंगे हुए हैं और बगल में यहां पे अंडे की कैरेट भी रखी हुई है।

यहां पे काफी सारी वाहन खड़े हुए हैं जैसे काफी फोर व्हीलर है स्कूटी स्कूटर --

और इनके सामने काफी सारे मकान बिल्डिंग बनी हुई है।

बेंच टेबल यहां पे बहुत सारी रखी हुई है लाइन से ऊपर काफी एक दो फैन लगे हुए हैं सामने यहां पे खिड़की या बोर्ड्स क्लियर नहीं है बट है।

यहां पे काफी सारी डिजाइन की कुर्सियां टेबल --

डिजाइनदार गोलाकार की कुर्सियां रखी लगी हुई है और यहां पे एक दो लोग बैठे दिख रहे हैं।

ऊपर यहां पे लाइटिंग वगैरह लगी हुई है और सामने एक बड़ी सी एल_ई_डी टी_वी लगी हुई है।

यहां का जो भी है बहुत अच्छा है बना हुआ है सिस्टम --

ये घर बना मकान है तीन-तीन दो मंजिला का मकेन बना हुआ है ऊपर चौड़ा लगा हुआ है सामने एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है कोई कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है।

यहां पे एक मेंबर बैठा हुआ है एक चेयर रखी हुई है और यहां पे फूल भंडार लिखा हुआ है यहां पे फूल माला सभी बिकते हैं।

पेटी या कार की टेबल है उसमें भी काफी सारा सामान पड़ा हुआ है।

और भी यह दो तीन यहां पे गुब्बारे भी लगाए गए हैं और काफी सारा सामान चारों साइड यहां पे रखा हुआ है।

जो जो घर में रखते हैं और काफी गमले हैं गमले के अंदर जो भी हरे प्लांट पौधे हैं सभी रखे हुए हैं।

बहुत बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मैदान ग्राउंड है यहां पे पड़ा हुआ है जो--

जमीन में जहां ये जो पूरा मैदान पड़ा हुआ है वहां पे--

सामान रखने के जो होते हैं वह संदूक बने हुए हैं।

बट ये क्लियर नहीं क्या हो रहा है यहां पे एक आदमी माला पहने खड़ा हुआ है .]

यहां पे झंडा तिरंगा लहराया जा रहा है भारत देश का झंडा होता है जो वह लहराया जा रहा है।

यहां पे काफी लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रही हैं।

और साउंड के लिए लगता है ऐसे कि साउंड है या दरवाजा क्लियर नहीं है।

यहां पे मंच पे एक दो लोग खड़े हुए हैं किस चीज का मंच बनाया गया है।

और सामने सीढ़ियां लगाया गया है तीन चार लोग यहां पे हैं।

यहां पे जो प्लास्टिक के फूल आते हैं वह लगाए गए हैं और सीढ़ियां भी बहुत अच्छी बनाई गई है मंच में जाने के लिए।

और बगल में भी यहां पे पेट्रोल भरने वाले लोग जो जॉब कर रहे हैं यहां पे वो भी खड़े हुए हैं दूसरी साइड यहां पे।

प्रेस है और भी काफी सारे इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट यहां पे रखा हुआ है।

और कुछ खड़ा हुआ है काला काला बट मेरे को क्लियर नहीं है दूसरी साइड भी काफी सारे प्रोडक्ट यहां पर सामान रखे गए हैं और लाइटिंग भी लगाई गई है।

और लाइटिंग वगैरह के काफी खंभे दिख रहे हैं और एक घर--

सामने से यहां पे एक गाड़ी ट्रेन ऐसे लग रहा है जैसे ट्रेन आ रही हो।

पेपर है और काउंटर में ऊपर फैन लगा हुआ है ए_सी लगा हुआ है सारी सुविधा है यहां पे।

यहां पे ड्रेसेस की शॉप है जिसमें से ड्रेस मिलती हैं लड़कियों वाली ड्रेसेस यहां पे रखी हुई हैं।

और काफी सारे सामान यहां पे रखे होंगे तभी तो लोग आ जा रहे हैं सामान लेने के लिए।

यहां पे काफी सारे अनाज हैं जो बोरियों में भरे रखे हुए भरे जा रहे हैं।

और एक स्कूटर खड़ी हुई स्कूटी खड़ी हुई है बाहर खड़ी--

और यहां पे किस चीज को टी_वी में देखा जा रहा है।

यहां पे एक ऑटो खड़ी हुई है और ऑटो से यात्री उतरे हुए हैं।

और लड़की को समझा रही है एक महिला--

और बड़े-बड़े पेड़ भी यहां पर लगाए गए हैं लगे हुए हैं।

और खिड़कियों में पर्दा भी लगा हुआ है ऊपर फैन वगैर भी लगे हुए हैं काफी सारे फैन है।

और भी बहुत अच्छी सुविधा यहां पे बनाई गई है।

यहां पे स्टार आकार का डिजाइन बना हुआ है।

यह मॉल है दो मंजिला का मॉल है जिसमें से काफी सारी लाइटिंग लगी हुई है बहुत अच्छी डिजाइनदार ।